और वो सारी लाइटें भी लगी हुई हैं।

और आसपास भी काफी सारी दुकानें नजर आ रही हैं।

ओर पीछे भी बहुत बड़े-बड़े घर बने हुए हैं।

ऊपर ही चिप्स वगैरह टंगे हुए हैं और मैगी रखी हुई है।

यह एक काफी बड़ा गार्डन है जिसमें --

की साइड में कुछ लोग घूम रहे हैं।

और उसके साइड में काफी सारे पेड़-पौधे हैऔर--

ए यह एक काफी बड़ा कारखाना है जिसमें कि काफी सारी कार --

यह एक बड़ा सा जिम है जिसमें काफी सारे लोग एक्सरसाइज कर रहेह--

तरह-तरह की एक्सरसाइज करने की मशीनें भी रखी हुई हैं।

क्लास है जिसमें कि काफी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे ड्राइंग भी कर रहे हैं।

और गर्ल्स बॉयज कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं।

पेट्रोल या डीजल भर रहे हैं काफी सारे लोग लगे हुए हैं।

और काफी सारे घर भी नजर आ रहे हैं।

और काफी सारे लोग आरती में शामिल भी हुए हैं।

यह यह एक रोड है जिस पे कि--

दो गाड़ियां जा रही है और साइड में ही--

और पीने के लिए घड़े में पानी रखा हुआ है और पीछे टॉवल भी टंगे हुए हैं।

ओर साइड में ही एक बिल्डिंग है।

और मछलियां रखी हुई हैं और--

और ई सायकल भी रखी हुई है।

नेट से कुछ ढका हुआ है।

वो काफी सारे लोग इधर से उधर घूम रहे हैं।

की बहुत अच्छी सजावट की गई है और आसपास--

औरलाइटिंग भी बहुत अच्छी है।

यह एक काफी बड़ी किरानी की दुकान है जिसमें की --